फिर साइड में ईटा दिख रहा है फिर ईटा वाला घर दिख रहा है रॉड निकला हुआ है।

यह इमेज में मुझे एक घर दिख रहा हैजो पूरा येलो कलर का है जिसमें बॉर्डर रेड कलर का उसमें ऊपर एक बैनर लगा हुआ जिसमें आधार लिखा हुआ है।

ये इमेज में मुझे एक तालाब दिख रहा है जिसके साइड में बहोत सा जंगल है फिर ए तालाब के इस पार में छोटे-छोटे जंगल है। .

जो पाइप का है जो ग्रीन कलर का है फिर जाली भी रखी गई है जो ब्लैक कलर की दिख रही है उसके पीछे वाइट कलर का कपड़ा बिछाया गया है ।

और बीच में येल्लो कलर का जिसका स्टैंड भी येल्लो कलर का साइड में कुछ बोक्सिस रखे गई हैं।